मेरे प्यारे देशवासियो
पिछले दिनों जिस बात ने हम सब का ध्यान आकर्षित किया वह है चीता
चीतों पर बात करने के लिए ढ़ेर सारे मेसेजेज आए हैं वह चाहे उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार गुप्ता जी हों या फिर तेलंगाना के एन रामचंद्रन रघुराम जी गुजरात के राजन जी हों या फिर दिल्ली के सुब्रत जी
देश के कोनेकोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियाँ जताई हैं
130 करोड़ भारतवासी खुश हैं गर्व से भरे हैं यह है भारत का प्रकृति प्रेम
इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा
एक टास्क फोर्स बनी है
यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुलमिल पाए हैं
इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पायेंगे
लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछकुछ काम सौंप रहा हूँ इसके लिए MyGovके प्लैटफार्म पर एक कॉम्पिटिशन आयोजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूँ
चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि अपने समाज और संस्कृति परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है
यही नहीं आप ये भी बतायें आखिर इंसानों कोएनिमल्स के साथ कैसे बेहवे करना चाहिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो रिस्पेक्ट फोर एनिमल्स पर जोर दिया गया है
मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कॉम्पिटिशन में जरुर भाग लीजिए क्या पता इनाम स्वरुप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए
मेरे प्यारे देशवासियो
आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिन्तक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है
किसी भी देश के युवा जैसेजैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं
दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ीबड़ी उथलपुथल को देखा था
वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे
इसीलिए उन्होंने एकात्ममानवदर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था
दीनदयाल जी का एकात्ममानवदर्शन एकऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वन्द्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है
उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा
हमारे शास्त्रों में कहा गया है आत्मवत् सर्वभूतेषु अर्थात् हम जीव मात्र को अपने समान मानें अपने जैसा व्यवहार करें
आधुनिक सामाजिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया
एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीनभावना थी उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया
वो कहते भी थे हमारी आज़ादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे
इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था
दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है
आज़ादी के अमृतकाल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे उनसे जितना सीखेंगे देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी
मेरे प्यारे देशवासियो
आज से तीन दिन बाद यानी 28 सितम्बर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है
इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे
भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरुप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है
यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा
इसकी लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी
मैं चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुतबहुत बधाई देता हूँ
हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है
शहीदों के स्मारक उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं
अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्यपथ पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मूर्ति की स्थापना के ज़रिये भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है
मैं चाहूँगा अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों परcelebrate कर रहे हैं उसी तरह 28 सितम्बर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे
वैसे मेरे प्यारे देशवासियो आप सभी के पास 28 सितम्बर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है
जानते हैं क्या है मैं सिर्फ दो शब्द कहूँगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना ज्यादा बढ़ जाएगा
ये दो शब्द हैं सर्जिकल Strike
बढ़ गया ना जोश हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें
मेरे प्यारे देशवासियो
कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती
अपनी रोजमर्रा की ज़िन्दगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं
बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते
ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा सम्बल होती है सिग्न लैंग्वेज
लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि सिग्न लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हावभाव तय नहीं थे स्टैंडर्ड्स नहीं थे
इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन सिग्न लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग Centerकी स्थापना हुई थी
मुझे ख़ुशी है कि ये संस्थान अब तक दस हज़ार वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है
दो दिन पहले यानि 23 सितम्बर को सिग्न लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी सिग्न लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है
सिग्न लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है
सिग्न लैंग्वेज कीजो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है
YouTube पर कई लोगों ने कई संस्थानों नेइंडियन सिग्न लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं यानि78 साल पहले सिग्न लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाईबहनों को होने लगा है
हरियाणा की रहने वाली पूजा जी तो इंडियन सिग्न लैंग्वेज से बहुत खुश हैं
पहले वो अपने बेटे से ही संवाद नहीं कर पाती थीं लेकिन2018 में सिग्न लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद माँबेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है
पूजा जी के बेटे ने भी सिग्न लैंग्वेज सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरीटेलिंग में प्राइज जीतकर भी दिखा दिया
इसी तरह टिंकाजी की छह साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है
टिंकाजी ने अपनी बेटी को सिग्न लैंग्वेज का कोर्स कराया था लेकिन उन्हें खुद सिग्न लैंग्वेज नहीं आती थी इस वजह से वो अपनी बच्ची से कम्यूनिकेट नहीं कर पाती थी
अब टिंकाजी ने भी सिग्न लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है और दोनों माँबेटी अब आपस में खूब बातें किया करती हैं
इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ केरला की मंजू जी को भी हुआ है
मंजू जी जन्म से ही सुन नहीं पाती है इतना ही नहीं उनके पेरेंट्स के जीवन में भी यही स्थिति रही है
ऐसे में सिग्न लैंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए संवाद का जरिया बनी है
अब तो मंजू जी खुद ही सिग्न लैंग्वेज की टीचर बनने का भी फैसला ले लिया है
मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ ताकि इंडियन सिग्न लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े
इससे हम अपने दिव्यांग साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे
भाइयो और बहनों कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेमकोश की एक कॉपी भी मिली है
हेमकोश असमिया भाषा की सबसे पुरानी डिक्शनरीज में से एक है
यह 19वीं शताब्दी में तैयार की गई थी
इसका सम्पादन प्रख्यात भाषाविद् हेमचन्द्र बरुआ जी ने किया था
हेमकोश का ब्रेल एडिशन करीब 10 हज़ार पन्नों का है और यह 15 वॉल्यूम्स से भी अधिक में प्रकाशित होने जा रहा है
इसमें 1 लाख से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है
मैं इस संवेदनशील प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ
इस तरह के हर प्रयास दिव्यांग साथियों का कौशल और सामर्थ्य बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं
आज भारत पारा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम लहरा रहा है
हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं
आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने में जुटे हैं
इससे दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बहुत बल मिलता है
मेरे प्यारे देशवासियो
मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला
अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को जरुर बताना चाहता हूँ
साथियो अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं और वो बचपन से ही हर्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही है
जब वो केवल तीन महीने की थी तभी उसे ओपन हर्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा
इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वीने और न ही उसके मातापिता ने कभी हार मानी
अन्वी के मातापिता ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर तय किया कि अन्वी के दूसरों पर निर्भरता को कम कैसे करेंगे
उन्होंने अन्वी को पानी का गिलास कैसे उठाना जूते के फीते कैसे बांधना कपड़ों के बटन कैसे लगाना ऐसी छोटी छोटी छोटी चीज़े सिखाना शुरू किया
कौन सी चीज की जगह कहाँ है कौन सी अच्छी आदतें होती हैं ये सब कुछ बहुत धैर्य के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की
बिटिया अन्वी ने जिस तरह सीखने की इच्छाशक्ति दिखाई अपनी प्रतिभा दिखाई उससे उसके मातापिता को भी बहुत हौसला मिला
उन्होंने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया
मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी ऐसी परिस्थिति में उनके मातापिताजी नेअन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया
पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पायेगी लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है
वो अपनी माँ के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है
अन्वी आज देशभर के कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है
योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया
अन्वी ने योग को आत्मसात कर जीवन कोआत्मसात किया
अन्वी के मातापिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है अब उसका सेल्फकॉन्फिडेंस गजब का हो गया है
योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरुरत भी कम होती चली जा रही है
मैं चाहूँगा कि देशविदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता अन्वी को योग से हुए लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस studyहै जो योग के सामर्थ को जांचनापरखना चाहते हैं ऐसे वैज्ञानिकों ने आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्ययन करके योग के सामर्थसे दुनिया को परिचित कराना चाहिए
ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बहुत मदद कर सकती है
दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है
विशेषकर डायबीट्स और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है
योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है
अब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने भारत के एक और प्रयास को रिकॉग्नाइज किया है उसे सम्मानित किया है
ये प्रयास है वर्ष 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव इसके तहत ब्लड प्रेशर की मुश्किलों से जूझ रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केन्द्रों में किया जा रहा है
जिस तरह इस इनिशिएटिव ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओ का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो अभूतपूर्व है
ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है उनमें से क़रीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है
मैं इस इनिशिएटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया
मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है चाहे वो समुंद्र हो नदी हो या तालाब हो
भारत का भी सौभाग्य है कि करीब साढ़े सात हजार किलोमीटर 7500 किलोमीटर से अधिक लम्बी कोस्टलाइन के कारण हमारा समुंद्र से नाता अटूट रहा है
यह तटीय सीमा कई राज्यों और द्वीपों से होकर गुजरती है
भारत के अलगअलग समुदायों और विविधताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलतेफूलते देखा जा सकता है
इतना ही नहीं इन तटीय इलाकों का खानपान लोगों को खूब आकर्षित करता है
लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दुखद पहलू भी है
हमारे ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुडी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं
Climate चंगे मेरिन इकोसिस्टम्स के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है तो दूसरी ओर हमारे बीचेस पर फ़ैली गंदगी परेशान करने वाली है
हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें
यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर इसके बारे में बात करना चाहूंगा
5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितम्बर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ
इसी दिन कोस्टल क्लीन यूपी डे भी था
आज़ादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली
इसमें जनभागीदारी देखते ही बन रही थी
इस प्रयास के दौरान पूरे ढ़ाई महीने तक सफ़ाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले
गोवा में एक लम्बी ह्यूमन चैन बनाई गई
काकीनाड़ा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया
एनएसएस के लगभग 5000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया
ओडिशा में तीन दिन के अन्दर 20 हजार से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे
मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया
इलेक्टेडॉफिशियल्स खासकर शहरों के मेयर और गाँवों के सरपंचों से जब मैं संवाद करता हूँ तो ये आग्रह जरुर करता हूँ कि स्वच्छता जैसे प्रयासों में लोकल कम्यूनिटीज और लोकल आर्गेनाइजेशंस को शामिल करें इनोवेटिव तरीके अपनाएं
बेंगलुरु में एक टीम है यूथ फोर परिवर्तन यूथ फॉर परिवर्तन पिछले आठ सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदायिक गतिविधियों को लेकर काम कर रही है
उनका मोट्टो बिलकुल क्लीयर है स्टॉप कंप्लेनिंग स्टार्ट एक्टिंग
इस टीम ने अब तक शहरभर की 370 से ज्यादा जगहों का सौंदर्यीकरण किया है
हर स्थान पर यूथ फोर परिवर्तन के अभियान ने 100 से डेढ़ सौ 150 नागरिक को जोड़ा है
प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम सुबह शुरू होता है और दोपहर तक चलता है
इस कार्य में कचरा तो हटाया ही जाता है दीवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्केचेस बनाने का काम भी होता है
कई जगहों पर तो आप प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्केचेस और उनके इंस्पिरेशनल क्वोट्स भी देख सकते हैं
बेंगलुरु के यूथ फोर परिवर्तन के प्रयासों के बादमैं आपको मेरठ के कबाड़ से जुगाड़ अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूँ
यह अभियान पर्यावरण की सुरक्षा के साथसाथ शहर के सौंदर्यीकरण से भी जुड़ा है
इस मुहिम की ख़ास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप प्लास्टिक वास्ते पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है
कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कैसे हो यह अभियान इसकी भी एक मिसाल है
इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं हृदय से सराहना करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो
इस समय देश में चारों ओर उत्सव की रौनक है
कल नवरात्रि का पहला दिन है
इसमें हम देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना करेंगे
यहाँ से नौ दिनों का नियमसंयम और उपवास फिर विजयदशमी का पर्व भी होगा यानि एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथसाथ कितना गहरा सन्देश भी छिपा है
अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है
दशहरे के बाद धनतेरस और दिवाली का भी पर्व आने वाला है
बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है
आप सब जानते हैं ये संकल्प है वोकल फोर लोकल का
अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं
आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयन्ती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है
खादी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये सारे प्रोडक्ट के साथसाथ लोकल सामान जरुर खरीदें
आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है
एक अच्छा तरीका ये है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करें
इस समय यह अभियान इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं
जो सही मायने में आजादी के दीवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी
इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस बार खादी हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इस प्रोडक्ट को खरीदने के आप सारे रेकॉर्ड तोड़ दें
हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है
स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन का नुकसानकारक कचरा ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है
इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुएnonplastic बैग्स का ही इस्तेमाल करें
हमारे यहाँ जूट के सूत के केले के ऐसे कितने ही पारंपरिक बाग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है
ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें
मेरे प्यारे देशवासियो
हमारे शास्त्रों में कहा गया है
परहित सरिस धरम नहीं भाई
यानि दूसरों का हित करने के समान दूसरों की सेवा करने उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है
पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और झलक देखने को मिली
आपने भी देखा होगा कि लोग आगे आकर किसी ना किसी टीबी से पीड़ित मरीज को गोद ले रहे हैं उसके पौष्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं
दरअसल ये टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है जिसका आधार जनभागीदारी है कर्तव्य भावना है
सही पोषण से ही सही समय पर मिली दवाइयों से टीबी का इलाज संभव है
मुझे विश्वास है कि जनभागीदारी की इस शक्ति से वर्ष 2025 तक भारत जरुर टीबी से मुक्त हो जाएगा
केंद्र शासित प्रदेश दादरानगर हवेली और दमनदीव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरण जानने को मिला है जो मन को छू लेता है
यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली जिनु रावतीया जी ने लिखा है कि वहां चल रहे ग्राम दत्तक कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 50 गांवों को गोद लिया है
इसमें जिनु जी का गाँव भी शामिल है
मेडिकल के ये छात्र बीमारी से बचने के लिए गाँव के लोगों को जागरूक करते हैं बीमारी में मदद भी करते हैं औरसरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं
परोपकार की ये भावना गांवों में रहने वालों के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आई है
मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनन्दन करता हूँ
मन की बात में नएनए विषयों कीचर्चा होती रहती है
कई बार इस कार्यक्रम के जरिए हमें कुछ पुराने विषयों की गहराई में भी उतरने का मौक़ा मिलता है
पिछले महीने मन की बात में मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट यियर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी
इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है
मुझे ऐसे ढ़ेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है
कुछ लोगों ने मिलेट से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनो के बारे में भीबताया है
ये एक बड़े बदलाव के संकेत हैं
लोगों के इस उत्साह को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ईबुक तैयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिशेस और अपने अनुभवों को साझा कर सकें इससे इंटरनेशनल मिलेट यियर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे माइगोव पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं
मन की बात में इस बार इतना ही लेकिन चलतेचलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ
29 सितम्बर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है
ये बड़ा ही ख़ास मौका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है
कोविड महामारी की वजह से पिछली बार के आयोजनों को रद्द करना पड़ा था
इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएं
इस दिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूँगा
आप सब भी नेशनल गेम्स को जरुर फोलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढाएं
अब मैं आज के लिए विदा लेता हूँ
अगले महीने मन की बात में नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाक़ात होगी
DSSHVK